मिट्टी पड़ी हुई है और बहोत सारे अम पत्थर बडे़ बड़े पड़े हुए हैं।

पूरी नीली कलर की है यहां पर जो सीट है वो भी नीली कलर की ही बनी हुई है।

यहां पे एक व्यक्ति शाॅप पर खड़ा है जो कुछ सामान के बॉक्स खोल कर--

लड़कियों की एक सीढ़ी बनाए गई हैं। जिससे ये लेबर आ जा रही है।

लाल पीले हरे सफेद कलर से स्टेज को बहोत ही सुंदर--

अंदर की तरफ कुछ टेबल और चेयर रखी है जहां पर एक व्यक्ति काम कर रहा है।

सफेद और लाल कलर से पेंट है इसके बाहर एक बाइक खड़ी हुई है इसका--

और कुछ लोग यहां पर कुछ गेम खेलते हैं ग्राउंड के बीच में ही--